आगे की तरफ एक लड़के को अंदर की तरफ जाते हुए देख पा रही हूं।

पीछे की तरफ मै बहोत सारे पेड़ पौधे देख पा रही हूं।

बगल में बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं रोड पे एक छोटा सा पाइप दिखाई दे रहा है।